इस इमेज में सब्जी मंडी नजर आ रही हैजिसमें--

और यहां की जमीन कच्ची है उसमें कुछ घास लगी हुई है।

इसके दीवार में लाइट एंड डार्क ब्लू कलर पता हुआ है।

इस इमेज में एक रोड के पास में दो बिल्डिंग नजर आ रही हैं।

जिसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है होटल गेटवे करना--

वो ब्राउन और वाइट कलर में है।

नीचे बैठे लोग ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं।

इस इमेज में जो बिल्डिंग नजर आ रही हैं उसमें काफी सारी रेक्स बने हुए हैं।

और साइड में ब्लैक कलर की--

और यहां एक फ़ेन चल रहा है कुछ पर्सन कुर्सियों पर बैठे हुए हैं।

इस इमेज में हमें एक ए_टी_एम शॉप नजर आ रही हैं जिसमें ए_सी लगा हुआ हैं।

यहां पांच से छह पर्सन खड़े हुए हैं।

इस इमेज में हमें काफी पथरीली जगह नजर आ रही है जिसमें बहुत सारे बड़े-बड़े पत्थर पड़े हुए हैं।

और लाइट ग्रीन कलर से पेंट की गई हैं।

इस ईमेज में हमें एक रेस्टोरेंट नजर आ रहा है जिसका नाम है कलीता रेस्टोरेंट ।

कुछ औरतें साड़ियां पहनी हुई हैं और यहां पर पूजा कर रही हैं।

यहां बलून भी लगे हुए हैं सजावट के लिए जिसमें ऑरेंज ब्लू एंड वाइट कलर है।

यहां शेड वाले तीन मकान बने हुए हैं एक दो शेड पर ब्लू कलर का शेड है और बिल्डिंग पर वाइट कलर है।

इस इमेज में अ एक ग्राउंड है जिसमें एक बिल्डिंग बनी हुई है वाइट कलर की--

सामने वाली दीवार पर पोस्टर लगे हुए हैं तीन--

सामने लकड़ी का एक टेबल रखा हुआ है।

अ ब्लैक कलर की मशीन है और यहां रेड कलर के कपड़े पहने एक पर्सन खड़ा हुआ है।

इसमें कच्ची जगह है जहां पर कुछ--